हमें लाइट दिख रही है हमें शटर दिख रही है।

हमें चारपाई दिख रही है हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

हमें इंसान दिख रहे हैं हमें गेट दिख रहा है।

हमें इंसान दिख रहे हैं। हमें जूते दिख रहे हैं।

हमें जिम सेंटर दिख रहा है।

हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।